मेट्रो स्टेशन का नाम आई_टी कॉलेज है।

यहां पर बहोत सी गाड़ियां चल रही है।

लड़कियां लाल कलर के दुपट्टे ली हुई हैं।

यहां पीछे एक दीवाल दिखाई दे रही है।

नीचे भूरे रंग की जमीन दिखाई दे रही है।

यह कोई एक बहुत बड़ा शहर है।

यहां पर बहुत सी लाइटे लगी हुई है।

यहां पर बहोत सी समाने रखी हुई है।

यहां पे बहुत से लोग सफेद कलर की कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पार्क में एक आदमी खड़ा है।

आदमी पोल के सहारे खड़ा हुआ है।

यहां एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

बिल्डिंग के सामने एक आदमी खड़ा है।

यहां पर सामने दो खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक पक्षी है।

पक्षी का रंग नीला और हरा है।

उसकी छत हरे कलर की है।

यहां पीछे एक लाल कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पर कुछ नीरस नाम की चीज लिखी हुई है।

यहां पर हल्का अंधेरा है।

यहां पर तीन बच्चे पीले कलर के टी शर्ट पेहने हैं।

और यहां पर एक बच्चा लाल कलर का टी शर्ट पहना है।

यहां ट्रैक पर लाइनिंग की गई है।

लड़के के पीछड़ पानी का फुहारा चल रहा है।

बेकरी का नाम द हेजल बूट नट फैक्ट्री है।

इस बेकरी के अंदर बहोत सी लाइटे जल रही हैं।

यहां पर डिवाइडर दिखाई दे रहा है।

यह एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है।

यहां पीछे घड़ी में दो बजके आठ मिनट और पच्चीस सेकंड हो रहे है।

गमले में लाल और सफेद कलर के फूल रखे हुए हैं।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

सीमेंट की ढलईया कर रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे ट्रॉली में केक रखे हुए है।

एक पीले और गुलाबी कलर के हैं।